सामने कुछ बाइकें गाड़ियाॅं खड़ी है लाल कलर का एक पिलर दिख रहा है।

जिसके अन्दर सारा सामान रखा है खाने का पिने का सामान --

और फूल दिख रहे है जो लाल कलर के है और बिजली के तार दिख रहे है और आने जाने का रास्ता भी दिख रहा हैं।